यह एक जनरल स्टोर की दुकान दिखाई दे रही है।

यह सामान फ्री का कुछ सामान खरीदने पर फ्री दिया जाएगा।

जहां शोकेस पे बहुत सारी ब्रेड रखी हुईं हैं।

एक फ्रीजर में बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई है।

और कुछ शीशा भी दिखाई दे रहा है यह टेबल पे रखी हुई हैं।

इसमें एक मोर भी नीचे दिखाया गया है।

भगवान कृष्ण अपनी मुरली बजा रहें हैं।

यह यह किसी विद्यालय का दृश्य है।

यहां पे बटर बटर वड़ा पाव चीज वड़ा पाव मेयोनीज वड़ा पाव इत्यादि मिलते हैं।

यहां पे एक बड़ा सा जनरेटर भी रखा हुआ है।

किताबों की दुकान हैं जिसमे बहुत सारी किताबे बेचने के लिए रखी गईं हैं।

गुब्बरो का कलर पर्पल वाइट येलो ब्लू है।

एक पीले रंग की बिल्डिंग बीच में दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे मोबाइल बेचने के लिए रखे गए हैं।

आसमान सफेद कलर का है और पीछे कई पेड़ भी दिखाई दे रहे --

उस परछाई में दो आदमी भी बैठे हुए हैं।

पंखा यहां पे चल नहीं रहा है इसलिए सबको गर्मी भी लग रही है।

एक साइड में कुछ ग्रुप भी बैठा हुआ है।

पानी के टैंक के ऊपर दो ग्लास भी रखे हुए हैं।

कुछ बच्चे अपना सामान लेकर यहां से जा रहें हैं।

घड़ी में चार बज रहे हैं घड़ी पीले रंग की है।

कुछ आदमी बोर्ड पे कुछ पढ़ रहे हैं।

जिसके पीछे ब्लू रंग का कर्टन है और नीचे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

यह फिर से एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

एक एच_डी_एफ_सी ईरगो है जिसका बोर्ड लाल कलर का है।

स्टेज के दोनों तरफ से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रहीं हैं।

पीछे दो खिड़कियां हैं जिसमें सफेद कलर के पर्दे हैं।

दो लाल कलर की चेयर वहां पे पड़ी हैं।

पर एक आदमी बैठके कुछ बर्तन से माँज रहा है।